सामने एक शटर है शटर बंद है आगे फर्श है अगल-बगल दरवाजा है बहुत सारा और--

सामने एक बड़ा सा गौ गौऊ गाय का चरा वाला चरनी है नाद होता ह वो गाय को खिलाने वाला होता है।

और वो चरनी में पानी पी रही है खाना खा रही है हरा घास खा रही है।

सामने एक हाउस है एक लड़की बैठी है।

सामने सड़क है सड़क पर बहुत भीड़ हुआ है।

सब आदमी साइकिल बाइक सब लोग लिया है सामने पौधा भी है।

सामने गार्डन है बाग है बगीचा है।

हरा भरा बाग और बगीचा दिख रहा है।

कपड़ा है कपड़ा बिछाया हुआ है और कपड़े के बिछाने के ऊपर--

सब लोग हाथ ऊपर उठाया हुआ है और जयकारा बोल रहे हैं।

और उस पर ऊपर चश्मा टंगा हुआ दिख रहा है ब्लैक कलर का नीचे दो गाड़ी दिख रही है वैन --

सामने फील्ड है फील्ड में सारे बच्चे हैं।

इसको रोज बोला जाता है ये पिंक कलर का होता है गुलाबी कलर डार्क --

सामने बहुत बड़ा बिल्डिंग है।

डांस कर रही हैं और एक्सरसाइज कर रही हैं।

और तरकूल का पेड़ भी लगा हुआ है हरा भरा--

सामने मार्केट है हाउस जैसा लाइटिंग जल रहा है येल्लो कलर का गुबाड़ा लगा हुआ डेकोरेशन है बीच में रास्ता है दोनों--

ये एक्सरसाइज कर रहा है सलोक पार्क है पार्क में नीचे फर्श पर मैट बिछा हुआ है।

मल्टीकलर का उसका पेंट है दो बीच में पाइप लगा है।

सामने से थोड़ा सा धुनधुला दिख रहा है और एक पोस्टर उसमें लगा हुआ है।

डिजाइनर दिख रहा है सामने भी--

आगे गार्डन है गार्डन के आगे चेयर पे एक आदमी बैठा हुआ है।

सामने बुक रखा हुआ हैं बुक का किताब है।

और सब डेकोरेशन से सजाया गया है।